शाॅल कलर के ब्लैक कलर की कुर्सी के पास में--

इस फोटो के अंदर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है और बीच में आग लगी हुई है लाइटे लगी हुई है।

और बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है लोग खड़े हैं।

और भी यहां नीचे बहुत सारे बेड पड़े हैं बेड के अह ऊपर अलग अलग बिस्तर बिछाए हुए हैं।

बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ट है।

ऊपर बादल दिखाई दे रहा है और टीले है।